बनी हुई हैं और इस बिल्डिंग के बाहर मोटरसाइकिल हैं।

दिख रहा चित्तर किसी होटेल या --

बैठकर आपस में बातें कर रहे है।

जहां काफी मात्रा में वाशिंग मशीन दिख रही है।

एक फौजियों के टेक का है जिस--

दुकान में काफी बड़ी बड़ी--

यहां पर साइड में कई पौधे है जो की हरे भरे है।

दिया गया चित्र एक दुकान का है जिसमें कई मूर्तियां रखी हुई है वह --

दिया गया चित्र एक दुकान का है इस दुकान का नाम गुलाब फर्नीचर एंड फर्निशिंग है इसमें एक--

वे हैं वे तैर रहे हैं वे कई स्लाइडें भी लगी हुई है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप लग रहीं हैं जिसमें लाल कलर ब्लैक कलर के यी स्पीकर दिख रहे है।